पौधे के पिछे मम बहोत बड़े-बड़े भी पौधे सब है।

हरे-भरे पेड़ भी है टावर भी है और --

पे फोन का क्यू.आर. है।